मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज मन की बात का सौवां एपिसोड है
मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियाँ मिली हैं लाखों सन्देश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊँ देख पाऊँ संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूँ
आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ भावनाओं से भर गया भावनाओं में बह गया और खुद को फिर सम्भाल भी लिया
आपने मुझे मन की बात के सौवें एपिसोड पर बधाई दी है लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं हमारे देशवासी हैं
मन की बात कोटिकोटि भारतीयों के मन की बात है उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है
साथियो 3 अक्टूबर 2014 विजय दशमी का वो पर्व था और हम सबने मिलकर विजय दशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी
विजय दशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व
मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है
एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है
हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं
हम इसमें पियोपलएस पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं
कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए
हर एपिसोड अपने आप में खास रहा
हर बार नए उदाहरणों की नवीनता हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार
मन की बात में पूरे देश के कोनेकोने से लोग जुड़े हर आयुवर्ग के लोग जुड़े
बेटीबचाओ बेटीपढ़ाओ की बात हो स्वच्छ भारत आन्दोलन हो खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जनआंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया
जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी
साथियो मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है
मेरे एक मार्गदर्शक थे श्री लक्ष्मणराव जी ईनामदार
हम उनको वकील साहब कहा करते थे
वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए
सामने कोई भी हो आपके साथ का हो आपका विरोधी हो हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए
उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है
मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गयी है
मेरे प्यारे देशवासियो इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया
मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलनाजुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था
मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते ही रहते हैं
लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है
काम का स्वरूप अलग दायित्व अलग स्थितियाँपरिस्तिथियों के बंधन सुरक्षा का तामझाम समय की सीमा
शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था खालीखाली सा महसूस करता था
पचासों साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जायेगा
जो देशवासी मेरा सब कुछ है मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था
मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया
पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटिकोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया
हर महीने में देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढता हूँ हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ
मैं देशवासियों के तपत्याग की पराकाष्ठा को देखता हूँ महसूस करता हूँ
मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोडा भी दूर हूँ
मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है
जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं
मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है
मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है
मन की बात स्व से समिष्टि की यात्रा है
मन की बात अहम् से वयम् की यात्रा है
यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है
आप कल्पना करिए मेरा कोई देशवासी 4040 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है कितने ही लोग 3030 साल से जलसंरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं उसकी साफ़सफाई कर रहे हैं
कोई 2530 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है
कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूँ
आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है
आज पिछला कितना ही कुछ आँखों के सामने आए जा रहा है
देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है
साथियो मन की बात में जिन लोगों का हम ज़िक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है
आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें
आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे
मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी
सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओबेटी पढाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था
और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विथ डॉगटर कैम्पेन पर मेरी नजर पडी तो मुझे बहुत अच्छा लगा
मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया
देखते ही देखते सेल्फी विथ डॉगटर एक ग्लोबल कैम्पेन में बदल गया
और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी टेक्नोलॉजी नहीं थी इसमें डॉगटर को बेटी को प्रमुखता दी गयी थी
जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ
ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है
आईये आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं
नमस्कार सुनील जी
नमस्कार सर मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज़ सुन कर
सुनील जी सेल्फी विथ डॉगटर हर किसी को याद हैअब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है
प्रधानमंत्री जी ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जितने की कोशिश की है तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है
सुनील जी अब आपकी बिटिया कैसी है आज कल क्या कर रही है
जी मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है एक 7th क्लास में पढ़ रही है एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है उन्होंने आपके लिए थैंक्यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लैटर भी लिखवाए थे असल में
वाह वाह अच्छा बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिये
बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पर लगातार मुस्कान बढ़ रही है
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी
जी शुक्रिया
साथियो मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है
चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है
जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गाँव की महिलाओं की चर्चा की थी
ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गाँव के चौराहों सड़कों और मंदिरों के सफाई के लिए अभियान चलाती हैं
ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हज़ारों इकोफ्रेंडली टेराकोटा कप्स टेराकोटा कप्स निर्यात किए उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली
तमिलनाडु में ही 20 हजार महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था
ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारीशक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है
साथियो अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद हैं
इनका नाम है मंजूर अहमद
मन की बात में जम्मूकश्मीर की पेंसिल स्लेट्स पेन्सिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था
मंजूर जी कैसे हैं आप
मंजूर जी थैंक्यू सरबड़े अच्छे से हैं सर
मन की बात के इस 100 वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
मंजूर जी थैंक्यू सर
अच्छा ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है
मंजूर जी बहुत अच्छे से चल रहा है सर बहुत अच्छे से जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर तब से बहुत काम बढ़ गया सर और दूसरों को भी रोज़गार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में
कितने लोगों को अब रोज़गार मिलता होगा
मंजूर जी अभी मेरे पास 200 प्लस है
अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई
मंजूर जी जी सरजी सरअभी एक दो महीनें में इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोज़गार बढ़ जाएगा सर
वाह वाह देखिये मंजूर जी
मंजूर जी जी सर
मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है न स्वयं की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस वजह से आपको बड़ी मुश्किलें होती थी वो भी आप कह रहे थे लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं
मंजूर जी जी सर जी सर
और नए एक्सपैंशन करके और 200 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने
मंजूर जी एवेन सर यहाँ पर जो फार्मर हैं सर उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर तब से
2000 का ट्री बेचते थे अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर
इतनी डिमांड बढ़ गई है इसमें तब सेऔर इसमें अपनी पहचान भी बन गई है इसमें बहुत से आर्डर हैं अपने पास सर अभी मै आगे एकदो महीनें में और एक्सपैंड करके और दोढाई सौ दोचार गांव में जितने भी लड़केलड़कियां हैं इसमें एडजस्ट हो सकते हैं उनका भी रोज़ीरोटी चल सकता है सर
देखिये मंजूर जी वोकल फोर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है आपने धरती पर उतार कर दिखा दिया है
मंजूर जी जी सर
मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुतबहुत शुभकामनाएं धन्यवाद भैया
मंजूर जी धन्यवाद सर
साथियो हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं
मुझे याद है विशाखापट्नम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था
उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे
जब बेतिया के प्रमोद जी ने लेड बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई या गढ़मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना
हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक की चर्चा मन की बात में की है
साथियो आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजयशांति देवी जी का भी जिक्र किया था
विजयशांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं
मन की बात में उनके इस अनोखे इकोफ्रेंडली आईडीईए की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया
आज विजयशांति जी फ़ोन पर हमारे साथ हैं
नमस्ते विजयशांति जी होव एआरई यू
विजयशांति जी सिर आई एएम फाइन
एंड होवs यूर वर्क गोइंग ओन
विजयशांति जी सिर स्टिल वर्किंग अलोंग विथ माय 30 वूमेन
इन सुच आ शॉर्ट पीरियड यू हेव रीच्ड 30 पर्सन्स टीम
विजयशांति जी येस सिर थिस यियर अलसो मोरे एक्सपैंड विथ 100 वूमेन इन माय एआरईए
सो यूर टार्गेट इस 100 वूमेन
विजयशांति जी या 100 वूमेन
एंड नोव पियोपल एआरई फैमिलियर विथ थिस लोटस स्टेम फाइबर
विजयशांति जी येस सिर एवरयोनएस नोव फ्रॉम मन्न की बात प्रोग्राम अल्ल ओवर इंडिया
सो नोव itएस वेरी पॉपुलर
विजयशांति जी येस सिर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मन्न की बात प्रोग्राम एवरयोन नोव्स अबाउट लोटस फाइबर
सो नोव यू गोट थे मार्केट अलसो
विजयशांति जी येस आई हेव गोट आ मार्केट फ्रॉम यूएसए अलसो थे वांट टो बाय इन बल्क इन लॉट्स क्वांटिटीज बट आई वांट टो गिव फ्रॉम थिस यियर टो सेंड थे uएस अलसो
सो नोव यू एआरई एक्सपोर्टर
विजयशांति जी येस सिर फ्रॉम थिस यियर आई एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट मादे इन इंडिया लोटस फाइबर
सो व्हेन आई से वोकल फोर लोकल एंड नोव लोकल फोर ग्लोबल
विजयशांति जी येस सिर आई वांट टो रीच माय प्रोडक्ट अल्ल ओवर थे ग्लोब ओएफ अल्ल वर्ल्ड
सो कांग्रेचुलेशन एंड विश यू बेस्ट लक
विजयशांति जी थांक यू सिर
थांक यू थांक यू विजया शांति
विजयशांति जी थांक यू सिर
साथियो मन की बात के एक और विशेषता रही है
मन की बात के जरिए कितने ही जनआन्दोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है
जैसे हमारे खिलौने हमारी तोय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था
भारतीय नस्ल के श्वान हमारे देशी डॉग्स उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी
हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम ग़रीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे झगड़ा नहीं करेंगे
जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई
ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं
समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है
मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी के हीलिंग हिमालयाज़ अभियान की चर्चा की थी
वो फ़ोनलाइन पर हमारे साथ हैं
प्रदीप जी नमस्कार
सर जय हिन्द
जय हिन्द जय हिन्द भईया कैसे हैं आप
सर बहुत बढ़िया
आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छा
आपने हिमालय को हील करने की सोची
अभियान भी चलाया
आज कल आपका कैम्पेन कैसा चल रहा है
सर बहुत अच्छा चल रहा है
2020 से ऐसा मानिये कि जितना काम हम पांच साल में करते थे अब वो एक साल में हो जाता है
हाँ जी हाँ जी सर
शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे honestly
लोग बहुत कम जुड़ रहे थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे
हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे
बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़े बदल गई
मतलब पहले हम साल में 67 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे
आज की डेट में हम डेली बेसेस पे पाँच टन कचरा इक्कठा करते हैं
अलगअलग लोकेशन से
मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं अलमोस्ट गिवअप करने की स्टेज पर था एक टाइम पे और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीडअप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी
सो आईm रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं
कौन इतनी दूरदराज एआरईए में काम करता है हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं
इस अल्टीट्यूड पे हम काम कर रहे हैं
वहाँ पे आपने ढूंढा हमें
हमारे काम को दुनिया के सामने ले के आये
तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं जो हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ
मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती
प्रदीप जी आप तो हिमालय की चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं
और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं
हाँ जी सर बहुत
ये अच्छी बात है आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वास्ते इस अलसो आ वेल्थ ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा अब हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना संवारना और सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है
प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे
बहुतबहुत धन्यवाद भईया
थांक यू सिर थांक यू सो मुच जय हिन्द
साथियो आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है
हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हों नदियाँ पहाड़ तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हों उन्हें साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है
ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा
पर्यटन में स्वच्छता के साथसाथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है
इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी ही जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे
मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरुर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए
ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन सिंगल उसे प्लास्टिक और इवास्ते जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है
आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इश्यू को लेकर इतना परेशान है उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है
साथियो मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी औद्रे ऑजुले ऑड्रे अज़ौले का आया है
उन्होंने सभी देशवासियों को सौ एपिसोड्स 100th एपिसोड्स की इस शानदार जर्नी के लिये शुभकामनायें दी हैं
साथ ही उन्होनें कुछ सवाल भी पूछे हैं
आइये पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं
ऑडियो यूनेस्को डीजी
नमस्ते एक्सेलेंसी डियर प्राइम मिनिस्टर ओन बेहल्फ ओएफ यूनेस्को आई थांक यू फोर थिस अपॉर्च्यूनिटी टो बीई पार्ट ओएफ थे 100th एपिसोड ओएफ थे मन्न की बात रेडियो ब्रॉडकास्ट
यूनेस्को एंड इंडिया हेव आ लोंग कॉमन हिस्टोरी
वे हेव वेरी स्ट्रोंग पार्टनरशिप्स टोगेथर इन अल्ल एरियास ओएफ और मंडते एड्यूकेशन साइंस कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन एंड आई वाउल्ड लाइक टो टेक थिस अपॉर्च्यूनिटी तोड़े टो तल्क अबाउट थे इम्पोर्टेंस ओएफ एड्यूकेशन
यूनेस्को इस वर्किंग विथ आईटीएस मेंबर स्टेट्स टो एंश्योर थाट एवरयोन इन थे वर्ल्ड हस एक्सेस टो क्वालिटी एड्यूकेशन बाय 2030 विथ थे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन थे वर्ल्ड कोल्ड यू प्लीज एक्सप्लेन इंडियन वे टो अचीविंग थिस ऑब्जेक्टिव
यूनेस्को अलसो वर्क्स टो सपोर्ट कल्चर एंड प्रोटेक्ट हेरिटेज एंड इंडिया इस चेयरिंग थे G20 थिस यियर वर्ल्ड लीडर्स वाउल्ड बीई कमिंग टो देल्ही फोर थिस इवेंट
एक्सेलेंसी होव डोएस इंडिया वांट टो पुट कल्चर एंड एड्यूकेशन एटी थे टॉप ओएफ थे इंटरनेशनल एजेंडा आई ओन्स अगैन थांक यू फोर थिस अपॉर्च्यूनिटी एंड कन्वे माय वेरी बेस्ट विशेस थ्राउघ यू टो थे पियोपल ओएफ इंडियाsee यू सून
थांक यू वेरी मुच
थांक यू एक्सेलेंसी
आई एएम हैपी टो इंटरैक्ट विथ यू इन थे 100th मन्न की बात प्रोग्राम आई एएम अलसो हैपी थाट यू हेव रेज्ड थे इम्पोर्टेंट इश्यूज ओएफ एड्यूकेशन एंड कल्चर
साथियो यूनेस्को की डीजी ने एड्यूकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है
ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं
बात शिक्षा की हो या संस्कृति की उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है
इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है
नेशनल एड्यूकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो एड्यूकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो आपको ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे
वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉपआउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम जनभागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे
मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाइलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं
आपको याद होगा एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे
झारखण्ड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हों कोविड के दौरान एलर्निंग के जरिये कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता nक
जी हों ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिये हैं
हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है
लक्षदीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो देश के कोनेकोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लिखकर ऐसे उदाहरण भेजे हैं
हमने उन तीन कॉम्पिटिशंस को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत लोरी और रंगोली से जुड़े थे
आपको ध्यान होगा एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी
मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है
इस साल हम जहाँ आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं
यह भी एक वजह है कि एड्यूकेशन के साथसाथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिये हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है
चरैवेति चरैवेति चरैवेति
चलते रहोचलते रहोचलते रहो
आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वाँ एपिसोड पूरा कर रहे हैं
भारत के सामाजिक तानेबाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है
हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है
इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है
एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है
मन की बात हमेशा सद्भावना सेवाभावना और कर्तव्यभावना से ही आगे बढ़ा है
आज़ादी के अमृतकाल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी नई ऊंचाई पर ले जाएगी और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है
एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं
साथियो मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं
वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं मैं उनका भी आभारी हूँ
मैं दूरदर्शन के और माइगोव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ
देशभर के टीवी चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं भारत के लोग भारत में आस्था रखने वाले लोग
ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है
साथियो वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं
लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे मेरी भावनाओं को समझेंगे
आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूँ आपके बीच में रहूँगा
अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे
फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे तब तक के लिए मुझे विदा दीजिये और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए
बहुतबहुत धन्यवाद